दूर उपर आसमान जिस मे नीला सफेद रंग है वो दिखाई दे रहा है कुछ नीले ऊँचे पहाड दिखाई दे रहे है।

इस चित्र मे एक एटीएम की मशीन पैसे निकाल ने वाली दिखाई दे रही है। जिसके पीछे सफ़ेद--

एक व्यकी के हाथ में बल्ला है सामने बिल्डिंग दिख रही है आसमान दिख रहा है हरी घास दिख रही है।

इस चित्र में एक हवाई अड्डा दिखाई दे रहा है जहा एक हवाई जहाज उतरता हुआ दिखाई दे रहा है।

इनमे रखी हुई है उपर भी कुछ डब्बे रखे दिखाई दे रहे।